क्रिकेट खेलता लोग दू तीन जना बा लोग एक जाने बॉल फेका तान एक जाने बैट पकड़ ले बन।

एगो लइका बा एगो झंडा ले के खड़ा बा और पीछे एगो बोर्ड लगल बा मतलब इ कउनो स्कूल के फंक्शन होता।

गेट एही पड़े बाटे और बहुत ही बड़ा स्कूल दिखाई दे टाटे बहुत बड़ स्कूल बा वाकई बहुत ब --